चेकर की मशीन रखी हुई है और एक कुर्सी भी रखी हुई--

कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है यहां एक झोपड़ा भी बना हुआ है।

यह एक कमरे में टेबल है टेबल पर दो लैपटॉप रखे हुए हैं।

ऐन्ड मूव अस इंदौर हैं वहाँ ऊपर की तरफ एक बिल्डिंग भीं बनी हुई हैं।

साइकिलें नई हैं और यह आपस में जमी हुई हैं।

यह एक पुल की तस्वीर है यहां वाटरपार्क दिखाई दे रहा है।

देखने के नजारे भी है। यह बहोत सुंदर दृश्य है।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

जहां बहोत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे है यहां कुछ बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं।

यहाँ एक शू शॉप है और शू रैंक का दृश्य है।

यह एक शादी के रिसेप्शन का दृश्य है।

से एंट्री का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां दूल्हे दुल्हन का फोटो भी लगा हुआ है।